यह तस्वीर एक ए.टी.म. की हे जिसके अंदर काफी लोग हे और बहार भि कुछ लोग वेट कर रह हे।

जहां पर काफी तेल के टिने दिख रहे है और सामने एक लड़का खड़ा है ।

यह तस्वीर किसी पार्क के मेले की है जहां पे एक बोहत ही नए प्रकार के झूले की तस्वीर है।